सड़क है इस सड़क पर एक गोल ग्राउंड है ।

मंदिर है इस मंदिर का नाम माता कुँवर मंदिर है ।

इस मैदान के में काफी बड़े ग्राउंड है।

इस सड़क पर बहुत सी गाड़ी आती-जाती है ।

यह घर है। यह घर हॉल जैसा है। इस घर को सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है। इस घर में एक कपड़े की --

घर है यह घर काफी बड़ा है इस घर में अनेक सारे लाइट भी है इस घर को पेंट किया है।